जो लोग घर जाना चाहतें हैं या कहीं दूर पे तो वो यहीं से जा सकते हैं।

और ऑनलाइन एग्जाम दिए जाते हैं सी ऑफिस दिख रही है चेयर पड़ी हैं इनपे ऑनलाइन एग्जाम --

ये एक पानी में चलने वाली नाव है |

जैसे कुछ लोग मिलकर चलाते हैं।

ये पार्टियों और शादियों में जाये जा --

इसपे काफी मात्रा में लड़कियां डांस कर रही और यहाँ पे काफी सारी लाइटिंग है |